झाड़ियां भी नजर आ रही हैं यहां पे कुछ गाड़ियां मुझे ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं कुछ ग्ले कलर की दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ एक सड़क नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत सारी गाड़िया और ऑटोरिक्शा चल रहे है कुछ लोग भी मुझे यहाँ चलते हुए नजर आ रहे --

यहां इसके सामने मुझे ये गेट दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे हरि भरी घास और झाड़ियां नजर आ रही हैं।

मुझे यहां लोहे के पोल भी नजर आ रहे हैं।

ब्लू कलर की मशीन नजर आ रही है और--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

यहां मुझे दो टिक्कियां और कुछ सलाद और एक पनीर पाव टेस्टी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हरा भरा खेत नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे एक नेट भी नजर आ रहा है।

यहाँ पे कुछ लेडीज सामान खरीद रही है मुझे शॉप में चूड़ियां क्लिप--

में मुझे कुछ लोग भी चलते हुए नज़र आ रहे है और कुछ बेंचेज भी दिख रहे है।

बिल्डिंग के बाहर मुझे कुछ गमले भी दिखाई दे रहे है जिनमें पौधे लगाए गए है।

इस तस्वीर में मुझे एक और पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर मुझे व्हाइट कलर के पिलर्स भी नजर आ रहे हैं।